पानी है पहाड़ है आस पास पेड़ पौधे है।

ऊपर दरवाजा है एक खिडकी है। सामने एक ग्रिल बनी है कुछ लोग सामान ले रहे हैं।

ऊपर उम्बर है कुछ पहाड़ है हरे भरे बहूत सारे पेड़ है रास्ता है वाहा कुछ लोग कुछ तो भी खेल रहे है लोहे का एक बार है।

सफ़ेद कलर के रॉड है।

उपर विशाल अंबर है हरे-बरे बहुत बड़े बड़े पेड़ है व्हाइट कलर के स्टम्प है।

एक कॉलेज है उपर आसमान है पेड़ है चबूतरे है।